एक आदमी खड़ा हुआ है । एक कुत्ता बैठा हुआ है बोहत सारी गाड़ी हैंबड़ा सा पेड़ है। बोहत सारी पत्तियां--